मुझे जेंट्स भी दिखाई दे रहे हैं कभी भी दे सकते हो कि दिख रहा है और बड़े-बड़े पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहा है हरी हरी पट्टी भी दिख रही है ऊपर बादल भी दिखाई दे रहा है।